यह एक पार्क है इस चित्र में बड़ा सा फुआरा है।

येह किचन काफी साफ है इसकी स्लैब बहोत सुंदर है बड़ी बड़ी टायल लगी है।

और यहां बड़े बड़े हैंगर है इनपे वेल्ट लटकी हुई है यह गले का पट्टा लग रहा है।

अंदर कॉस्मेटिक का समान है साथ में सतपाल की दुकान है डॉक्टर की।

बहुत सारी कुर्सियां हैं और बॉस भी खड़ा है।

यह स्कूल की छात्राएं हैं यहां पर हरे भरे पेड़ है।

गाड़ी के पास बहोत सारी मोटरसाइकल है।

और एक एम_सी लगी है यहां बड़ी सी टेबल में बहोत सारी कवर रखे हैं।

यहां एक हरे पालक की सब्जी बेच रहा है एक आदमी और एक आदमी भिंडी तोरी करेले बेच रहा है।

यहां हरी भरी घास है बड़ा खुला मैदान है हरी हरी हवाएं चल रही हैं।